और यहां पे लाइट का बेपर बंद है।

यहां पे कुर्सी भी रखी हुई है और यहां पे एक--

हरे रंग की प्लाई सी दिख रही है।

हरे रंग के पेड़ ही पेड़ दिख रहे है हरियाली ही हरियाली दिख रही है यहां पे।

पेड़ लगे हुए छोटे बड़े पेड़ देख रहे हैं ये।

और यहां पे गेट पे फूल लगे हुए हैं।

और कुछ यहां पे फूल लगे हुए हैं स्टार में और यहां पे ये गमले रखे हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो यह म्म--

और यहां पे देख सकते हो आप पांच औरतें बैठी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो कूलर लिखा हुआ है।

बहोत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है।

और यहां पे ये तीन बाइक खड़ी हुई है।

और सफेद रंग की भी है और इस यहां एक और आदमी खड़ा हुआ है उसने--

यहा पे आप देख सकते हो यहा पे बु बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए है।